सामने एक पिज़्ज़ा हट की--

द्वार पर एक घंटी लगी हुई है।

भटिंडे की पावर प्लांट --

सामने एक छोटा सा अलमारी रखा हुआ है।

शॉप के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

एक आदमी बाहर खड़ा है।

पहाड़ पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं बादल हैं।

एक मंदिर की फोटो है।

यह एक जिम की फोटो है।

कैफे के बाहर एक आदमी खड़ा है।

अपनी दोनों हाथ जेब में डाले हुए हैं।

यह एक बस स्टैंड की फोटो है।

बहोत सारे लोग यहां बस का इंतजार कर रहे--